इन्होंने बालों को ऐसे बांध के रखा है।

और अंदर से स्टॉकिंग लगाइ हैं।

और काव कवर है वो अभी तक खोली भी नहीं है।

बहोत प्यार डिजाइन जो की साड़ी के साथ काफी सुंदर लगेगा।

काफी तरह के झूले लगे हैं यह बच्चों के लिए होते हैं आमतौर पर।

यहां पर हाथ धोने के लिए।

काफी अच्छे से उन्होंने एक अपने आपको बैंड किया है।

काफी अच्छा बुक स्टोर लग रहा है इनका।

जिसमें दो तीन लोग खड़े हैं।

और काफी ध्यान से रोड में चल रहे हैं जो कि--

साथ में दो तीन अंकल भी खड़े हैं।

बट मुझे उनके बारे में ज्यादा नॉलेज --

और फ्रेश पेस्ट्री है यहां पर।